पेड़ लगा हुआ है एक बगल में पेड़ है और मकान बना हुआ है और किसी ऐसी जो कि गेहूं है इसमें --

यहां पे एक तला बना हुआ है।